इसमें से बीच वाली ई-रिक्शा की पन्नियां अभी नहीं खुली हैं।

ये किसी फलों का दुकान लग रहा है। यहां पे संतरा सेब अन्नानास और बहोत सारी फल सजाए गए हैं।

और ये लंबी है और इसके दोनों तरफ हरे-भरे घास भी नजर आ रहे है।

यह फोटो किसी जंगल का लग रहा है। इस फोटो में सामने पहाड़ नजर आ रहा है और --

ये मंदिर का दृश्य है इस मंदिर में तीन मूर्तियां रखी गई है।

और उसके बगल में दो छोटी कटोरियाँ हैं। उन कटोरियों में खीर तथा चटनी रखी गई है।

सबसे बड़ी सुनहरे रंग की मूर्ति है गौतम बुद्ध की। उसके बाद नीचे सफेद रंग की मूर्ति है वह भी गौतम बुद्ध की ही है।

यहां एक सफेद रंग का बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है।